जो रेड कलर से लिखा हुआ है और उसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो एक शॉप के पास खड़े हुए हैं।

इस तस्वीर में एक शेर दिखाई दे रहा है।

का कलर बहोत अच्छा लग रहा है।

कई लोग नजर आ रहे हैं।